इस कमरा में ऐ_सी फिट है जो वाइट कलर की है।

इस फोटो मे एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है जिसका नाम है मां भगवती रेस्टोरेंट --

इस फोटो में अनार छोड़ते हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया है।

आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा दिखाई गया है आसमान भी साफ सुथरा है।

इस फोटो में एक चिड़िया को दिखाया गया हैजिसका एक पैर ऊपर है तो एक पैर नीचे है।

इस फोटो में एक व्यक्ति को दिखाया गया है व्यक्ति के जस्ट बगल में एक चबूतरा बना है।

इसके आसपास में बहुत सारे लोग हैं। आसपास में बहुत सारे घर को भी दिखाया गया है। लाइटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है।

सभी कुर्सियां सामान प्रकार की हैं और एक रैक में बनी हुई है।

इस फोटो मे एक महात्मा बुद्ध की प्रतिमा दिखाई गई है जिसको अच्छे तरीके से सजाया गया है ।

इसके जस्ट बगल में एक व्यक्ति खड़ा है जो जींस और शर्ट पहना हुआ है और माथा में टोपी पहना हुआ है।

बीचों बीच में एक बड़े से पेड़ को लगाया गया है।

इसमें बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां दिखाई गई हैं।

उसके ऊपर से नीचे की और पानी गिरते हुए दिखाया गया है जो पूरा का पूरा वाइट कलर का है।

उसके द्वारा एक छोटी सी नदी बनती है नदी के जस्ट ऑपोजिट साइड में बहुत सारे लोग खड़े हैं।

एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

चबूतरा के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ लगाया गया है और आस पास भी बहुत सारे पेड़ है।

फोटो में एक दुकान को दिखाई गया है जोकि कॉस्मेटिक का दुकान है ।

और उसके जस्ट बगल में नीचे में कालीन बिछाई गई है जिसका कलर ग्रीन कलर है और आसपास मे बहुत सारे कुर्सियां लगाई गई हैं।

फोटो में एक हॉस्पिटल को दिखाया गया है हॉस्पिटल का पेंटिंग व्हाइट कलर से की गई है।

और मेंन गेट खोला है अंदर में लाइटिंग बहुत अच्छे से की गई है।

उसके आगे बाइके खड़ी हैं आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जोकि बहुत ही हरे भरे हैं।

इस फोटो में एक बस के अन्दर का भाग दिखाया गया है जिसमें की बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं।

जैसे कि सेव संतरा और पपीता भी रखा गया है।

तराजू भी रखा गया है प्लस में कुछ इटा भी रखा गया है।

सोफे पर बैठे एक व्यक्ति को दिखाया गया है ऊपर दीवार पर एक पंखा लगा हुआ है।

दोनो के हाथ से हाथ जुड़ा हुआ है। और इसके पीछे मे एक स्कूटी भी खड़ा है। आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा दिखाया गया है।

तरह- तरह की लाइट लगाया गया हैं यहां तक की पौधे में भी लगा दिया गया हैं जिससे अच्छा लगता है।

इसमें रैक बनी हुई है रैक में बहुत सारे पुस्तकें रखी गई हैं।

ऊपर में बहुत सारा पाइप रखा हुआ है जिसमें कि कुछ सीमेंट का बना है तो कुछ प्लास्टिक का है।

इसके बाहर में भी एक व्यक्ति खड़ा है आसपास का क्षेत्र में पेड़ पौधे भी दिखाई--

उसके द्वारा एक छोटी सी नदी बनती है नदी के जस्ट ऑपोजिट साइड में बहुत सारे लोग खड़े हैं।

कुछ लड़कियां हैं कुछ अह बूढ़े हैं कुछ व्यक्ति हैं आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं आस--

चिड़िया चिड़िया ब ब्लैक कलर की है उसके माथे पर रेड कलर का दिखाया गया है।

मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है मंदिर पर एक व्यक्ति धोती और कुर्ता पहने हुए बैठा हुआ है।

आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा दिखाया गया है आसमान भी साफ सुथरा है।

इसका मेंन गेट शीशा का बना हुआ है अंदर में बहुत सारी रेक बनी हुई हैं जिसके ऊपर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

यह एक कपड़ा का दुकान है जो देवघर में स्थित है इस दुकान का नाम है देवघर वस्त्रालय।

बाहर दो कुर्सियां रखी गई है एक भूरे रंग की है तो एक वाइट कलर की है।

उसके बगल में बहुत सारे पेड़-पौधों को भी दिखाया गया है जिसकी पत्तियाँ बहुत ही हरी-भरी हैं।